एक विद्या इंस्टिट्यूट करके नाम लिखा हुआ आ रहा है जो की आप देख पा रहे हैं है।

एक मनुष्य भी है जो की

यहाँ बहुत सारी प्लांट भी है। प्लांट को ब्लैक ब्लू कलर से पेंट कर दिया गया है।